और एक रेलिंग बनी हुई है और अंदर हाथी है दो हाथी बने हुए है और एक कांच से कुछ बना हुआ है घर टाइप का बना है।

कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं चट्टान वगैरा बनी हुई है यहाँ पे और आसमान दिखाई दे रहा है।